वहां पर मुझे गेट नजर आ रहा है पार्क नजर आ रहा है और यहां पर मुझे इतने सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह देखने में बहोत सुंदर नजर आ रहा है ऊपर टेंपल सजा हुआ है।

यहां पर मुझे एक नाला नजर आ रहा है जहां पर सब पानी भरे हुए है।

यहां बहुत बड़ा मशीन खड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कामों में काम आता है मुझे नजर आ रहा है।

एक मच्छी बजार नजर आ रहा है मुझे जहां पर लोग मच्छी खरीदने के लिए आए हुए हैं।

एक क्रॉस नजर आ रहा है।

सब लोगों ने साड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं चादर ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक प्रिंट शॉप अ प्रिंटेड प्रिंट करने वाला शॉप खुला हुआ है ऊपर फैन चल रहा है और एक कोना पे एक अ ए_सी चल रहा है।

यहां पर एक बिल्डिंग के सामने एक पोस्टर लगा है भगवान जी का।

जहाँ पर एक झंडा नज़र आया नज़र आ रहा है एक अ येल्लो कलर का ग्रीन कलर का रेड कलर का झंडा नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे एक ऐ_सी ऐ_सी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

वहां आए हैं वो लिखा हुआ--

यहां पर बहुत सारे कचरे फेक हुए हैं ब्रश नजर आ रहा है।

फैन नजर आ रहा है मुझे और उसके ठीक बगल प दो चेयर नजर आ रहा है जो ब्राउन कलर के हैं।

और यहां पर मुझे एक पोस नजर आ रहा है पोल ।

बैलून के तीन कलर के तीन कलर के बैलून लटके हुए नजर आ रहे हैं एक है यह ग्रीन व्हाइट ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है।